तथा यहां बेंच भी है जिसके ऊपर कपड़े रखे हुए नजर आ रहे हैं जहां कपड़ों का कलर लाल आसमानी सफेद तथा पिला दिखाई दे रहा है।

यह एक रेस्टोरेंट है यहां की दीवालें ब्लैक तथा व्हाइट कलर की दिखाई दे रही हैं।

यहां लाइट भी चल रही है जो कि व्हाइट तथा येलो कलर की दिखाई दे रही है।

तथा यहां लड्डू अगरबत्ती तथा नारियल रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक मंदिर है यहां मूर्ति रखी हुई है जिसके सामने दिया जल रहा है।

यहां सामने घर दिखाई दे रहा है जो की सफेद कलर का है।

यहां एक सूखा पेड़ भी है जोकि ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है।

यह एक स्कूल है। यहां की बिल्डिंग का कलर आसमानी है तथा यहां काफी पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो कि हरे कलर के हैं।

यहाँ टीना लगा हुआ है जो की ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है।

जिसके ऊपर प्लस तथा स्टार का सिंबल बना हुआ है।

यहां फोनपे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

तथा यहां लकड़ी के कपाट भी बने नजर आ रहे हैं यहां बाहर एक बाइक भी जाती हुई दिखाई दे रही है।

तथा यहां ब्लू येलो तथा व्हाइट कलर की लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही है।

यह एक रेस्टोरेंट है यहां की दीवालो का कलर ब्लैक व्हाइट --